और साइड में एक दूध की दुकान है एक पेड़ लगा हुआ यह देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोग खड़े हुए हैं। कु --

यह एक ईसाईयों का मंदिर लग रहा है। ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है और इसमें कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और एक पेड़ लगा पेड़ --

और एक दो माहिल्या तीन और एक टांगा खड़ा हुआ है और पीछे बोहोत हरयाली है और एक पेड़ लगा हुआ है देखने में हमें बोहोत अच्छा लग रहा है इसका कलर बोहोत अच्छा लग रहा है।

यह हमे स्टेशन जैसा दिखाई दे रहा है इसमें बस में लिखा है --

पंडाल में लाइटिंग भी बहोत अच्छी है और बाहर लोग भी बहोत खड़े है। ये देखने में हमें बहोत अच्छा लग रहा है।

एह देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बॉय यलो कलर की ई दीवाले पुती हैं और रेड कलर का पेन्ट हुआ है।